दिवार पर काले रंग का कर्टंस लगाया है जिसमे उन्होंने तारो से लाइटिंग की हुई है लाइट पिले रंग की है और लड़की ने--

हुआ है छोटा सा और आसपास पत्थर है छोटे-छोटे पेड़-पौधे है घर बने--

बुद्ध की बहुत ही सुंदर मूर्ति रखी गई है और उसके साथ में सोने की छोटी-छोटी मूर्तियां र--

सबर किया हुआ है और साइड में लोहै के ग्रिल्स पर बहुत सारे झंडे लाल पीले नीले रंग के लगाए हुए हैं।

कीबोर्ड पर सफेद अक्षरों से लिखा हुआ है आसपास बहुत ही सफाई है आसमान नीले --

प्रोडक्ट रखे हुए हैं अंदर जाने के लिए बहुत ही सुंदर नाइनटी परसेंट ऑफ लिखा हुआ है।

अंदर बहुत सारे लाल पीले नीले हरे रंग के नेल्स हैं बाहर एक महिला और आदमी का चित्र बनाया हुआ है और साठ परसेंट ऑफ लिखा हुआ है।

आसमान पे नीले रंग और सफेद रंग किया हुआ है आसमान बहुत ही सुंदर लग रहा है और जो मंजिल है उसमें--

सड़क के किनारे पुलिस की वैन रखी हुई है और चारों तरफ लोगों की भीड़ है एक पुलिस वाला बाहर खड़ा है चारों तरफ--

सफेद हरा रंग किया हुआ है बड़े से मैदान में बहोत ही सुंदर लाल रंग की बाउंड्री बनाये हए है आस-पास एक मंजिला घर भी बने हुए हैं।

सड़क के किनारे दरवाजे पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें बहुत सारी जानकारिया दी गई है जिसने होटल गै--